यहाँ पे बहुत सारी दुकाने हैं एक दुकान है जिसमें बहुत सारी समान रखे हुए है जिसमें एक बहुत सारी कप - उप की प्लेटियाँ पर फ़ोन ओन रखे है कोने में मिट्टी का समान रखा हुआ है।

यह एक उम्म्म दूध की जहाँ पे लोग आके अपने दूध को देते हैं दूध सेंटर है। यहाँ पे महिला दूध लेके डायरी मैन्टैन कर रहे हैं।

एक कॉफी या टी सर्व हो रही है और यह बड़ी दुकान लग रही है और यह दिखने मे भी बहोत खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ बहोत सारे प्लास्टिक के कप भी रखे हुए हैं।